मेरे सामने एक किचन दिखाई दे रहा है किचन में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है किचन में एक गैस भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

किचन है बहुत सारी अलमीरा भी बनाई हुई दिखाई दे--

बिल्डिंग में बहोत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग पर पेंट नहीं किया हुआ दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक गार्डन नजर आ रहा है गार्डन में कुछ पिक्चर भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

पर बहुत सारे लोहे के गेट की नजर आ रहे हैं।

जो कि एग्लो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक टेंट भी लगाया हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर टेंट का कलर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ है गत्ते की पेटियां भी नजर आ रही है।

इनमें बहुत सारे बिस्किट भी रखे हुए दिखाई दे रहे--

शो में एक सटुल भी नजर आ रहा है।

यहां पर बहोत सारी बुके रखी हुई भी दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है यहां पर इसका पानी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।